और भी खाने का बहोत सारा सामान रखा हुआ है फ्रीज है फ्रीज के अंदर ठंडा रखा हुआ है।

और भी कुछ पोस्टर लगा हुआ हैं जिसमें कुछ न कुछ लिखा हुआ हैं सामने रोड हैं।

यहाँ स्कूल का फील्ड हैं स्कूल के बच्चे यहाँ पर खेल-कूद रहे हैं।

यहाँ पर उम्म्म और भी कुछ बच्चे हैं जो खड़े हैं।

इस मंदिर में चारों साइड स्टेचू से ही मंदिर बनाया गया हैं।

बहुत सारे खेलने के सामान हैं चीजें हैं बहुत सारी लेने वाली--